छत पे बहुत सारे बैलूंस दिख रहें हैं।

यह एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में एक टेंट दिख रहा है।

यहां पर आसमान दिख रहा हैं।

काउंटर दिख रहा है काउंटर के ऊपर शीशा दिख रहा है।

यहां पर क्रेट दिख रहा है जिसका रंग नीला है और उसमें आलू दिख रहे हैं।

पैलेट के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया जुग्याल ब्रांच लिखा हुआ है।

एक मिरर दिख रहा है मिरर के साइड पे लाइट्स लगी हुई हैं।

और आउटडोर इसी का पार्ट दिख रहा है।

यहां पर जिओ डिजिटल लाइफ लिखा हुआ है।